चित्र के अंदर हमे बहोत सारे घर बडे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और घरोका रंग सफ़ेद पीला क्रीम कलर का दिख रहा सामने पानी भरा हुआ हरे रंग--

चित्रके अंदर हमे एक घर दिखाई दे रहा है।

और कुछ सिडिया दिखाई दे रही है जो काले रंग की दिखाई दे रही है और पास मे एक और सिडिया दिखाई दे रही है इसकी छत पर लाइट और ग्रे कथई रंग की दिखाई दे रही इसका फर्श खराब दिख रहा --